यहां पर कुछ पुरुष खड़े हुए हैं।

कुछ पोस्टर भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर रोड दिखाई दे रही है।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

यहां पर सड़क दिखाई दे रही है।

यहां पर पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

यहां पर बैठने के लिए कुर्सियां भी दिखाई दे रही हैं।